एवं साड़ी चूड़ी उ माथा में फिर बिंद माथा पे फिर बिंदी फूल लगे हमे सब हमारे भारत के कल्चर सबसे सुन्दर कल्चर है।

इतना गोबर पोछे बला ए किन्ना सुन्दर-सुन्दर गोर पोछेव ला ए उनने कम्बल रख ला .

काहे कोरोना पूरा फ़ैल फैल जा है उहे सैनिटाइज़ बैगवा उगवा पर कर रहले है ओने भी सब खरा सैनिटाइज़ करैले टेस्ट उस्ट करैले कोरोना दवे करैल के इतना ।

आतंक मचा के इ सब करना जरुरी हो गेले सैनिटाइज मास्क ।